कुर्सियों का रंग काला--

गमले में लगाया गया हैं और उसके पास किसी--

एक हरी घास लगी हुई है और उसके--

ग्राउंड के पीछे एक--

और इसके सामने एक बहुत बड़ी--

है उसके सामने एक बिल्डिंग दिख रही है।

है जिसके ऊपर लिखा है टी_एच_ए --